हरी रंग की घास है धूप खिली हुई है देख के समय पता चल रहा है कि दिन का समय है।

आसपास बाहर में कुछ पोल दिखाई पड़ रहे है लाइट के और उनके आसपास कुछ पेड़ भी है जिनके पत्तों का रंग हरा है और देख के पता चल रहा है ये दिन का समय है ।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सामने एक रोड दिखाई पड़ रहा है रोड के आस पास कुछ ठेले लगे हुए है।

और उसके पत्तों का रंग हरा है सामने एक इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने पीले रंग का शर्ट पहना हुआ है ।

एक ने सादे रंग का शर्ट पहना हुआ है और हाथ में घड़ी पहना हुआ है आसपास देख के पता चल रहा है ये दिन का समय है ।

हुसैन मैमोरियल स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आस-पास देख के पता चल रहा है ये दिन का समय है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सामने एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग का शर्ट पहना है उसके पीछे काले रंग की कुर्सी भी दिखाई दे रही है आ --

बीच में एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है जिसके बीचों बीच एक ट्रक खड़ा है जिस पर कुछ बांस पड़े हुए हैं और कुछ इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं --

उसके बीच में एक स्कूटी भी दिखाई दे रही है जिनके आसपास कुछ पेट्रोल और डीज़ल लिखे हुए --

मशीन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे की और कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जिसको पेंट किया गया है सादे रंग से और आसपास देखकर पता चल रहा है यह दिन का समय है --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ सामने कि ओर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ दिखाई दे रहा है --

लोहे से बने हुए और आकृति दिखाई दे रही है पीछे की ओर एक टावर भी दिखाई दे रहा है और पीछे --

कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की ओर धूप खिली हुई दिखाई दे रही है।

एक ने शर्ट पहना हुआ है दिखाई दे रहा है उसके सामने एक टेबल है उसके ऊपर पानी का बोतल रखा हुआ है वह दिखाई दे रहा है और ऊपर रंग बिरंगे लाइट जली हुई हैं ।

एक कमोड ओर लगा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की ओर और कुछ वाशिंग मशीन लगे हुए दिखाई दे रहे है जिनका रंग गोल्डन लाल और सफेद है।

उसके पास ही कुछ बिल्डिंग्स भी है जिनका रंग सफ़ेद है और उस पे लाल रंग की धारियां दी हुई है --

करीम विश्वविद्यालय करीम बाग कटिहार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर --

पास ही में उसके श्री साड़ी वल्ड़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उस --

बस कुछ लाइट और जली हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सामने एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके आसपास कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के पत्तों का रंग हरा है पास --

यूनियन बैंक जैसे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर एक कोकोकोला लक्ष्मी होटल --

पास ही में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रहे है जिसमे से एक का रंग पीला और एक का रंग सफ़ेद है पीछे --

पिंक और ऑरेंज दिखाई पड़ रहा है जिनके ऊपर कुछ काले रंग के पानी के टंकी भी लगे हुए हैं।

सामने कुछ थीमिंग बाईसाइकिल लगे हुए दिखाई दे रहे है और बीच में कुछ ट्रेड मिल्स और वेट भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी है --

ऊपर की ओर एक पंखे लगे हुए दिख रही है और कुछ लाइट्स भी हैं।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स में कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है जिनमें से एक पोस्टर पे रूपा --